यहां पर एक बस खड़ी है यहां पर बहुत सारे लोग लगे हुए हैं।

यहां पर एक हीरो होंडा बाइक जॉन का बोर्ड लगा हुआ है।

यहां पर एक कूलर भी लगा हुआ है।

यहां पर एक दुकान भी है यहां पर एक प्रिंटर मशीन है यहां पर बहुत सारे पेड़ पौधे भी लगे हुए है।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

बहुत सारे लोग बॉल से खेल रहे हैं इस पाइप के पास एक बैग रखा है जहां पर बहुत सारे पेड़ पौधे भी --

यहां पर कुछ खंभे भी लगे हुए हैं।

यहां पर एक घर है यहां पर बहुत सारे पेड़ पौधे लगे हुए हैं।

यहां पर बहुत सारी लाइटें जली हुई है यहां पर कुछ लोग काउंटर पर बैठे है।